और उसपर बड़े बड़े पत्थरों से डिजाइन बना हुआ नजर आ रहा है।

यहां पर हमें लाल रंग का पेंट किया हुआ दिखाई दे रहा है।

पोस्टर चिपका हुआ नजर आ रहा है एक जगह बालू इकट्ठीत दिखाई दे रहा है।